और बहुत सारा सामान इसके सामने लगा हुआ है और वह--

हमें गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

रिस्पेक्ट करने वाले होते है और लोगों की सेवा करने वाले दिखाई देते हैं यहां पर--

फोन में सामने पिक्चर्स के होर्डिंग और सी_बी_आर भी दिखाई दे रहा है यहां पर--

सामने एक और पार्क दिखाई दे रहा--

रेड कलर की मिट्टी का खदान दिखाई दे रहा है वे--